मस्त से गेंद गेम खेल रहा है और सब रेंग रेंग कर रहा है उसके पीछे बहुत अच्छा फील्ड है जो की बहुत मस्त है और अच्छा है और सुंदर दिख रहा है यहां पीला कलर का --

यहां एक कॉलेज है जो की बहुत मस्त और बहुत अच्छा दिख रहा है उस--